ये जो सामने पिक्चर दिख रही है।

लॉकर के ऊपर भगवान की फोटो दिख रही है।

ये एक रूम की पिक्चर लग रही है जिसमें बहुत सारी चेयर्स व टेबल दिख रहे हैं।

दो हाथी की स्टेचू दिख रहीं हैं।

ये पिक्चर एक क्लास रूम की पिक्चर लग रही है।

ये जो सामने पिक्चर दिख रही है ये एक क्लास रूम की पिक्चर लग रही है जिसमें बहुत सारे--

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें बहोत सारी चेयर और टेबल दिख रहे है।

साइड की दीवार पे ए_सी और कर्टेन्स लगे हुए दिख रहे हैं।

यह पिक्चर किसी पैलेस की पिक्चर लग रही है।